यहाँ पर एक चर्च है जो कि अ चर्च काफी डेकोरेट है बहुत सारे बैलून वगैरा से डेकोरेट है एंट्री गेट टाइप से बना हुआ बैलून से।